और मुझे सामने दो आम के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पी--

इसे मुझे एक पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पब्लिक भी दिखाई दे रही है।

और सामने मुझे एक बेस्ट ऑफ का ऑफर भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर को देख के लग रहा है कि ये जो पिक्चर है किसी एक प्लेस की फोटो है जहां अ स्कूल की ऊपर अ हेडिंग बनी हुई है।

और पौधों के पीछे लगभग पंप की मशीने भी दिखाई दे रही हैं और सामने मुझे एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

लग रहा है कि किसी चीज का भी उद्घाटन हुआ है।

देखने में मुझे जो फोटो है अ वो काफी अच्छे से इन्होंने खींच रखी हुई है और ऊपर की ओर अ सिर्फ इन्होंने शाइनिंग सी बना रखी है।

पर मुझे ढेर सारे इन्होंने पौधे लगाकर रखे हुए हैं जो शायद मुझे लग रहा कि यह मतलब बेचने के लिए फो--

मुझे एक आदमी भी मुझे सामने की ओर एक--

कहें तो सामने मतलब अ काफी अजनबी मतलब क्लॅटी से फोटो खींच रखी हैं दिन के समय का ये जो फोटो हैं।

और सामने की ओर मैं देखु तो सामने की ओर एक पेट्रोल पंप है जहां पे लोग तेलवाने के लिए आ रहे हैं।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

धूप के साथ छांव भी काफ़ी बना हुआ है रोड सारा खाली पड़ा हुआ है।

के लिए रेसिंग ट्रैक भी काफी अच्छी तरीक़े से उन्होंने बना रखे हुए हैं।

बात करें तो पिक्चर की जो क्लेरिटी है वो भी पिक्चर की जो क्लेरिटी है वो भी काफी अच्छी उन्होंने खींच रखी हुई है।

देख के मुझे लग रहा है कि जो सामने की ओर कुछ लेडिस वगैरह खड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है।